बहोत ही सूंदर लग रहा है नीचे स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में पानी है और पानी का रंग नीला है जो की बहोत ही गहरा और बहोत ही सूंदर लग रहा है साइड में हरे-भरे पेड़ है।

जैसे की हमको दिख रहा है ये गार्डन है गार्डन में तीन बेंचेस लगे जिस पर हम बैठ सकते हैं जो कि ग्रेग कलर की और ब्राउन कलर की दिख रही है इनके पास तीन फ़ोन लगे हुए हैं जिसमें लाइट्स लगी हैं जो सोलर पैनल से चलती है जो कि नाईट जली दिन में नहीं जलती है।

जैसा की हमको दिख रहा है स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल मे बोहत सारी लोग है जो गर्मी में अपने बच्चो के साथ नहाने आए है जो कि बोहत ही मज़ा करने के लिए आए है नीचे ब्लू कलर का कारपेट डला हुआ है ग्र कलर का फर्श लगा हुआ है जो की बोहत ही अच्छा लग रहा है और इस--

जिससे धुप नहीं आती है वो बहोत ही अच्छा लग रहा है नीचे स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है पानी का रंग नीला दिख रहा है नीली रिंग के अंदर बहोत सारे लोग दिख रहे है जिन्होंने कलर के टी शर्ट पहनी हुई है और--

जैसा कि हम को दिख रहा है यह स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में तीन बच्चे हैं जो पानी में बहुत ही मस्ती कर रहे है इसमें से एक लड़की है दो लड़के--

जैसा के हम को दिख रहा है ये स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल मे बच्चे दिख रही है जो कि नहा रही है पीछे एक भवन दिख रहा है पर वो भवन नहीं है वो स्विमिंग पूल का ही हिस्सा है।

वो सामने कांच लगे हुए डंबल्स रखी हुए गिम के मशीने रखी हुई है इधर ब्लैक कलर की पुल्ल डाइन की मशीन गेस्ट की मशीन रखी हुई है जोकि बहोत ही अच्छी लग रही है।

बारिश नहीं हो रही हैं पर बोहत ही सूंदर लगता है फिर इसको गिला होने के बाद ऐसा लगता है की हम स्विमिंग पूल मे खड़े हैं जो की बहुत ही अच्छा लगता हैं।

साइड में हरी-भरी घास से बीच में की एलइडी लाइट लगी है पीछे ग्रे कलर की दीवाल दिख रही है छोटा-सा गेट दिख रहा है हरे-भरे पेड़-पौधे दिख रहा है।

उस के पीछे दो चार और पेड़ है वो भी बहोत हरे-भरे दूर एक छत छपरा टाइप लग रहा है वो भी बोहत अच्छा लग रहा है नीचे मैदान है हल्की-फुल्की लकड़िया पड़ी हुई है जो कि बहुत अच्छी लग--

जैसे की हमको चिड़िया घर दिख रहा है चिड़िया घर के कोने कोने पे जाली लगी हुई है जो की ब्लैक कलर की है जो की बहुत ही बारीक़ सी जाली है और इसमे एक चीता दिख रहा है और राइट साइड हरी कलर की दीवाल दिख रही है नीचे मैदान दिख रहा हैं।

और हरी हरी छोटी छोटी घांस दिख रही है और पीछे पूरा रेलिग कवर करि हुई है जाली का जिसके कारन से चीता बाहर नही जा सकता--